यहाँ पस अच्छा भी लगता हैं लोग खाने भी आते हैं समोसा फुल्की और भाजिया सोनपापड़ी उनपापड़ी अच्छा अच्छा मिठाई भी बनता हैं बहुत अच्छा भी लगता--

और ये फुलकी भी है बनाते भी हैं बहुत अच्छा अच्छा खाते भी हैं आते भी हैं।

रोड भी हे और बहोत सारा आदमी मन भी हैं और घोड़ा भी हे घोड़ा